अ नीले और पीले रंग की कई दीवारों पे पेंट हुआ हुआ दिखाई दे रहा --

एक व्यक्ति नाव पे खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां काफी हरे रंग के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी गार्डन की है जो कि रात में खींची गई हुई लग रही है।

इस तस्वीर में दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं।

पिले व लाल गुब्बारे भी उड़ते दिखाई दे रहे--

और एक दीवार पे पंखा लगा हुआ है।

यहां एक चार पहिए की गाड़ी भी आई हुई है।

कई गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर एक लाल और भूरे रंग का बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है जिस पर प्रवीन साड़ी सेंटर भी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस कमरे की दीवार सफेद है एक दीवार गुलाबी रंग की है जिस पर एक ए_सी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

काफी सारे लोग फोटो खींचते दिखाई दे रहे हैं।

तीन टेबल और काफी सारी कुर्सियां दिखाई दे रही--

एक अलमारी है काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की दीवार पर पीले रंग का पेंट है जिसपे कई सारी आकृतियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां काली रंग की सीढ़ियां और लाल रंग की छत जिस पे व्हाइट कलर की लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां काफी सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कई कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

और बगल में बने कई ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

और काफी लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

और सफेद रंग की लाइटें जलती हुई भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक नीले रंग का बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

और दो लोग आपस में बैठे हुए बात करते दिखाई दे रहे हैं।

एक तालाब भी है और कई बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।